सामने एक पोल गाड़ा जैसा हुआ बनाया हुआ है उस पर टाइमिंग लगाया हुआ है।

बगल में रास्ता है रास्ता पर टेम्पु स्कूटी चल रहा है।

पोल भी गाड़ा हुआ है एरोप्लेन का कलर वाइट और ब्लू कलर का है।

नीचे कार लगाई हुई है कार सिल्वर कलर की है।

पीछे संतरा रखे हुए हैं और अनार रखा हुआ है सेब रखा हुआ है।

बहुत सारी एक जगह पे लकड़ी से बांधा गया है।

खिड़की वाइट कलर का है और सामने बहुत सारे गाड़ी लगाया हुआ है।

ईटा है छोटे छोटे घास लगाए हुए हैं आसमान पूरा साफ है।

यहां पर पार्किंग एरिया का दृश्य दिख रहा है।

बहोत सारी तारे इधर उधर लगाए हुई है।

रेख बनाया हुआ है छोटा छोटा।

कुछ गेट भी लगाए हुए हैं और रेख बनाया हुआ है।

टेंपू ब्लैक कलर की और पीली कलर का है।

यहां पर एस_बी_आई बैंक का दृश्य दिख रहा है।

नीचे में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए है।

यहां पर क्लासरूम का दृश्य दिख रहा है जिसमें ऊपर लाइट लगाया हुआ है वाइट कलर का।

यहां पर एक बड़ा सा हॉल का दृश्य दिख रहा है।

एक सीमेंट का बनाया हुआ है जिसपे बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

रेख पर तीन बाटल रखे हुए हैं।

बहोत सारे कार्टून्स रखे हुए हैं।

घर का कलर और बिल्डिंग का कलर ब्लू येलो कलर का है।

ऊपर में भी बड़ा बड़ा रेख बनाया हुआ है जिसे कवर किया गया है ब्लैक कलर से।

रंग बिरंगे लाइटे भी लगाई हुई है।

कुछ कार्टून्स रखे हुए हैं बाहर में।

उस पर गढ़वा सेवा सदन हॉस्पिटल लिखा हुआ है और बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं।

एक पर छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं।

अंदर में एक बनाया हुआ है बहुत सारा जिसमें बहुत सारे सामाने रखी हुई है।

कुछ स्विच व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के हैं।

टेबल पे टेंट लगाया हुआ है जो पीली कलर का है और पीछे में भी टेंट लगाया हुआ है जो पीली और वाइट कलर की है।

वेटिंग्स बनाया हुआ है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

मंदिर का पैंट ऑरेंज कलर का किया हुआ है।

कुछ ठेला भी लगाया हुआ है ठेला पे खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

पीछे टेंट लगाया हुआ है टेंट वाइट कलर का है।

उसमें बहोत सारे फल फ्रूट रखे हुए हैं।